ई यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मड़वा को बनाए हुए हैं जोकि दिखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं।

और यहाँ पर बहुत ही अच्छे से सजाए हुए हैं दिखने में काफी सुंदर लगते हैं और यहाँ पर बहुत सारे फूलों से सजाए हुए हैं अलग अलग कलरों में अलग अलग रंगो में फूल बहुत अच्छे लगते हैं देखने में।

बहुत ही अच्छे से यहाँ पर शिवजी का मूर्ति शिवलिंग बनाए हुए है जो की बहुत ही अच्छा देखने में लग रहे है।

यहाँ पर हम देख सकते है यहाँ पर नीचे में बहुत सारे लोग हैं जो कि देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं सभी उजरा कपड़ा पेहने हुए हैं और टोपी भी लगाए हुए है जो की बहुत ही अच्छे हैं।

यहाँ पे हम देख है साईं बुक भंडार पुरानी किताब की दुकान लिखी हुए है यहाँ पे --

और यहाँ पर बहुत ही अच्छे फूलों से सजाई हुए हैं और यहाँ बहुत सारे झूमर फूल से सजाये हैं औरत यहाँ पर बहुत ही सारी लाइट लगाई हैं चुकभुकिया लाइट है देखने मे बहुत ही अच्छी यहा पर लग रहे हैं काफी सुंदर--

यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पर ढेर सारे यहाँ पर चुकभुकिया लगाए हुए है जो कि सभी कलरों मे है दिखने में बहुत ही अच्छे है।

यहाँ पे आप देख सकते है बहुत ही अच्छे से यहाँ पे सजाइ हुए हैंदेखने में काफी सुंदर लग रहे हैं।

यहाँ पे हम देख सकते है यहां पर कुछ लोग एकत्रित होकर बैठे हुए है जो की यह पर ताश आगेरा-बगेरा कुछ खेला खेल रहे है।

जो कि यहाँ पे सभी उजला कपडा पहने हुए हैं और सभी का बाल काला है।

यहाँ पे हम देख सकते है दिखने में बहुत ही अच्छे लगते है और यहाँ पर लगता है किताब दुकान है जो कि दिखने में बहुत हीअच्छी लगते है और यहाँ पर हेलमेट भी रखे हुए है काले रंग का।